यहाँ रोड दिखाई दे रही एक वॉच दिखाई दे रही ऑटो दिखाई दे रही बाइक दिखाई दे रही कुछ लोग देखे दे रही सामने एक शॉप दिखाई दे रही बिल्डिंग दिखाई दे रही।

यहा एक सैलून की दुकान दे रही है। यहा एक पंखा दिखाई दे र है ब्लॅक कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

चेयर दिखाई दे रही है। काच का गेट दिखाई दे रह है। कुछसा कुछ वस्तुए दिखाई दे रही है।

अँड कूछ क्रीम रखी हुई है। व्हाइट कलर की दिवारे दिखाई दे रही है काच दिखाई दे रहे है अँड ब्लॅक अँड व्हाइट टाइल्स दिखाई दे रही है।